यहीं पर एक ब्याह का प्रोग्राम दिख रहा है यहीं पर बहुत सारी लड़की हैं लड़का हैं।

यह एक बाल्टी में फूल बिछ रहे हैं यह एक मैट पे फूल दिख रहे हैं या एक गैट है।

यह एक बहुत सारी गाय है एक काली गाय है एक चितकोवरी गाय है एक छपर सा दिख रहा है।